इधर साइड भी है राम मंदिर बोलते है इसको और अं इधर साइड में बहोत सारे जेंट्स लोग बैठे हुएं हैं।